रूम के बाहर बैनर टंगा हुआ है।

और कुछ आदमी और औरतें नदी के बाहर खड़ी हुई है।

बिल्डिंग के बाहर कुछ से मैदान है।

यह एक दुकान के ऑफिस का फोटो दिखाई दे रहा है।